यहाँ एक बुक सेंटर है जहाँ पर बहुत सारी बुके रखे हुए है बुके सफेद कलर की है पीले कलर के है।